सामने लाइट भी जल रहा है कुछ पंखे भी लटके हुए हैं।

इस छवि में एक ट्रक दिख रहा है जिसका कलर ऑरेंज लाल और सफेद है।

एक आदमी है जो ट्रक पे चढ़ा हुआ है।

इस दृश्य में बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं जिसमें पाइप लगा हुआ है।

सामने पीले कलर की घास फूस है और हरे कलर की भी घास फूस है।

सामने एक फोम का डब्बा है जिस पर भूले भुरे कलर का टेप चिपकाए हुआ है।

सामने सीमेंट का सीढ़ी भी बना हुआ हैं।

लाइट भी लगा हुआ है।

दुकान के बगल में छोटा छोटा घास उगा है।

यह दृश्य एक नदी का है जिसमें एक पुल बना हुआ है जिसमें एक रेलिंग भी है।

एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है जिसका हाथ एक आदमी पकड़ा हुआ है।

इस छवि में दो तीन बिल्डिंग दिख रहा है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट्स जल रहे हैं।

पिंक कलर का लाईट सजा हुआ है और बहुत सारे फूल पत्ते भी लगे हुए हैं।

एक पीला रंग का गाड़ी लगा हुआ है।

सामने ब्लू कलर का एक गेट भी दिख रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग हैं करकट का सेड बना हुआ है उस पर ब्लैक कलर का हैदर नगर लिखा हुआ है।

थाली मे बिरयानी सजाया हुआ है सामने एक नमक का डब्बा भी है।

ऊपर लाइट भी लगा हुआ है।